यह एक सैलून का पिक्चर है यहाँ तीन चार आदमी दिख रहे हैं जोकि एक लड़का का बाल कटा रहा है जिसके सर पर बहुत सारा क्लिप लगाये हुए हैं।

एक अंकल जी फोटो खींच रहे बहुत सारे लाइट लगे है जो की बहुत चमक रहे हैं बहुत सारे पुस्तक है एक आंटी है जो की हंस रही है |

यहाँ दो लड़के खड़े हुए हैं दोनों लड़के टी शर्ट पहने हैं एक शर्ट पहना है जिसका कलर सफेद है।

उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। अपनी एड़ी को ऊपर किया है। सफेद कलर का ड्रेस पहना है।

मंदिर बनाया गया है| उनके लिए बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं| यह बुद्धा सुनेहरा कलर का दिख रहे हैं| एक बुद्धा नीले कलर का कपड़ा पहना है| एक बुद्धा गुलाबी का एक बुद्धा पीला--

बगल में ही एक लेडीज़ है मिक्की माउस झूला के पास ये बलून है बहुत सारे नीचे में हरा कलर का टाटपट्टी बिछा हुआ है।